नीचे खाली डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

एक लोहे की खिड़की दिखाई दे रही है।

दो आदमी बाहर खड़े हुए हैं एक ने सरिया पकड़ रखा है।

सामने काफी सारे फल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सुंदर डिजाइन बना रखा है कुछ बॉक्स बना रखे हैं।

यहां पर काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

चर्च के बाहर काफी सारे लोग दिखाई दे रही है।

पीछे बहुत सुंदर बैलून लगे हुए हैं।